अस्सा लागत। टेंपू खड़ा बाटे। वहाँ घर बाटे। हरी हरी घास बाटे। वहाँ बालू रखल बाटे। केतना निक --

वोईजु खंभा गाड़ल बा। कितना निक तार घिचल बा। बहुत सुंदर लागता ते। कितना निक टेम्पु लागताते। कितना निक लागता। करिया मे रंगल बा। नीला रंगल बा।